एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति --

और पीछे कुछ बड़े -बड़े पत्थर रखे हुए दिख रहे हैं ।

रखे हुए दिखाई दे रहे है और ऊपर पेड़ की --

फल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।